यहां मुझे एक महिला दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ सब्जियां दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक लैब दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ सोफे दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ चेयर दिखाई दे रही है।